यह एक घर है इसके बाहर पीले रंग का कलर किया गया है और इसके बाहर --

यह एक पेट्रोल पंप है जो एक व्यक्ति बाइक लिए खड़ा है और पेट्रोल भर रहा है।

एक बार नीले कलर का कचरा पात्र भी रखा हुआ है इसके अंदर बहुत सारी लाइटिंग जग रही --

और रेड टोपी पहने खड़ा है इसके बाहर एक कचरा पात्र है जो रेड कलर का है और इसके अंदर --

आगे एक सड़क खाली है और एक साथ में एक कांच की दुकान है जो कि अभी ओपन है इसके आगे दो मोटरसाइकिल खड़े हैं और ऊपर बोर्ड लगे हु --

यह एक कंपनी है इसके अंदर लोहे की पाइप दिख रही है और इसके पास --

यह यह एक पर्वत है इसके ऊपर बहुत ही हरियाली है।

यह एक कार्यालय खाली स्थान पर खड़ी है और आस पास में बहोत से बादल बने हुए हैं जोकि बारिश का संके --

यह एक शॉप है जिसके बाहर एक जरनेटर पड़ा है और एक स्कूटर खड़ा है।

आदमी बैठा है व्हाइट पैंट शर्ट पहने हुए और इसके बाहर कांच लगा हुआ है यह शॉप खुली है अभी --

आदमी भी दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं आसमान नीला हो रखा है और एक --

एक नीली नीली गार्डर दिखाई दे रही है जो कि उसके किनारे पर लगी है पुल के नीचे से पानी निकल रहा है और --

हैं पत्थरों पर बहुश सारी झाड़ियां भी है।

यह शॉप है इसके बाहर लेमिलेशन और रेडियो सीट कवर लगाए जाते है इसके साथ में एक मुकेश नाम से --

पोस्टर लगा हुआ है जो की दुकान बंद है जिसके ऊपर पीले रंग का पेंट किया हुआ है इसके बहार एक मि --

और वृक्ष भी है आसमान व्हाइट हो रखा है यह लोग मिट्टी पे बैठे हुए हैं आधे घूम रहे हैं आधे बातचीत कर रहे हैं।